एक डांसिंग कैक्टस नजर आ रहा है।

नदी के किनारे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

नदी के किनारे इस जगह पे घाट बनाया गया है।

इस तस्वीर में एक रोड नजर आ रहा है।

खेत में एक जगह पे स्टैचू बनाया गया है।

एक दरवाजा भी नजर आ रहा है।

हारमोनियम रखा हुआ है स्पीकर भी रखे हुए हैं।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

वापस आ रहे हैं एक गाड़ी खड़ा है।

कुछ लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

प्लास्टिक के चेयर पे एक पैर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक नदी नजर आ रहा है।

बहुत सारी दुकानें नजर आ रही हैं।

और भी कुछ लोग फूल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हॉल में कुछ गुब्बाड़े लगे हुए हैं।

नीले लाल और सफेद कलर के गुब्बारे हैं।

रोड के बीचों-बीच बना हुआ है।

इसके ऊपर गुंबज पे एक घड़ी लगा हुआ है।

एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है।

एक बुलेरो खारा दिख रहा है।

एल_सी_डी टी_वी दिखाई दे रहा है।

रोड के किनारे बहुत सारे ऊंचे-ऊंचे--

जिस पे बॉयज होस्टल लिखा हुआ है।

हॉल में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

एक पुरानी इमारत नजर आ रही है यह इमारत बहुत पुरानी लग रही है।

सीरियों पे दो लड़के चढ़ते हुए--

एक इलेक्ट्रिक बोर्ड नजर आ रहा है।

कुछ पानी के बोतल भी रखे हुए हैं।

फ्लावर्स दिख रहे है पिले और लाल कलर के--

दौड़ते हुए घोड़े का एक फोटो लगा हुआ है।

सभी क्लास की किताबें उपलब्ध हैं।

एक वेटिंग एरिया नजर आ रहा है।

बहुत सारी घर भी नजर आ रही हैं।

बहुत सारे फूल के पौधे भी नजर आ रहे हैं।

कुछ फूल के भी--

इस तस्वीर में एक नदी नजर आ रहा है नदी के ऊपर एक --

हनुमान जी हैं शंकर भगवान हैं।

इस तस्वीर में एक हॉल नजर आ रहा है।

जहाँ डेली नीड्स के सभी सामान उपलब्ध हैं।

युप्पी और मैग्गी भी रखा हुआ है।

गिफ्ट की अलग-अलग टाइप की सामानें मिलती हैं।

एक पंखा लगा हुआ है एक कैमरा भी दिख --

हरी-हरी घांसे दिखाई दे रही हैं।

कुछ फूल के पौधे नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे बच्चे नीचे पार्क में बैठकर पढ़ते हुए दिख रहे हैं।

दुकान के ओनर का नाम शांतिराज एंटरप्राइजेज दुकान का नाम है।

हॉल में कुछ लड़कियाँ डांस करती हुई दिख रही हैं।

रूफटॉप पे है ऐसा देख के लग रहा है।

खुशबू नाम से यहाँ सलवार सूट मिलता है।

एक तरफ गाजर नजर आ रहे हैं।

बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।